तस्वीर म देख सकदन कि सामने हमतें कई सारी इमारतन दिखेण लगीं ईं इमारत पर सफ़ेदा रंगा करयूं ईं इमारत पर हमतें खिड़कीन दिखेण लगीं बालकनिन दिखेण लगीं।

इ खोई पर लिख्युं च थाना चम्बा जनपद टिहरी गढ़वाल और सामने हमतें एक सुख्यूं डालू भीन दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर पर हमतें एक पारकन दिखेण लग्युं ई पारक पर हमतें कई सारा झूलन दिखेण लग्यां पारक पर हमतें कुछ लोगन दिखेण लाग्यां।

ईं तस्वीर पर हम देख सकदन कि सामने हमतें एक छोटी सि सड़कन दिखेण लग्यीं सड़क का बगल मा हमतें एक दिवारन दिखेण लग्यीं अर सड़क का हकि तरफ हमतें एक बगीचा दिखेण लग्युं।